स्विमिंग पूल के पानी का कलर मुझे स्काई ब्लू दिख रहा है यहां पे मुझे कुछ रंग बिरंगी छतरियां भी नज़र आ रही हैं और कुछ झूले भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे मुझे बहोत सारे घर नजर आ रहे हैं और आस पास कुछ दुकानें भी दिखाई दे रही हैं यहां पे हरे भरे पेड़ पौधे और--

और घर की खिड़कियां भी मुझे यहां दिखाई दे रही हैं मुझे घर के आस पास लोहे की ग्रील दिखाई दे रही है।

और आस पास अ लोहे की ग्रीले नजर आ रही हैं।

में एक लोहे का खंबा दिख रहा है जिसके साथ तारें लिपटी हुई हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक लोहे का गेट नजर आ रहा है जिसके आस पास मुझे बाउंड्री भी दिख रही है।

लोहे के गेट के पास मुझे सड़क दिखाई दे रही है यहां पे बहुत सारी हरी भरी घास नज़र आ रही है और एक बाइक भी दिखाई दे रही है।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

आस पास मुझे बहोत सारी लाइट्स भी जलती हुई नजर आ रही है और सूखा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक पार्क नजर आ रहा है जहां पे मुझे एक लोहे का पोल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे मुझे बिल्डिंग मे बहोत सारी खिड़कियां और दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक विजय पुस्तक भंडार की शॉप दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे बहोत सारी मिट्टी और टूटे हुए पत्थर नजर आ रहे हैं और कुछ मजदूर लोग यहां पर काम कर रहे हैं।

यहां पे मुझे एंड्रॉयड सैमसंग वीवो --

स्टेज नजर आ रही है जहां पे बहोत सारे भगवानो की मूर्तियों को रखा गया है।